जो मशीन है उसका कलर ग्रीन है साइड में एक बॉल भी लगी हुई है जिसका कलर वाइट है।

उसी के साथ यहाँ के अंदर एक वेलकम का नाम लिखा हुआ है जोकी टेबल पर लगा हुआ है जो ब्लू कलर में कलर किया हुआ है।

इस पिक्चर में हमें एक खुला आसमान दिख रहा है दो से ज्यादा पेड़ दिख रहे हैं जो की हरे-भरे है।

जिसमें ब्लू रेड पिंक येल्लो ग्रीन कलर की लाइट रखी हुई है उसी के साइड में हमे एक नारियल का पेड़ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक क्रिश्चियन का बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर प्लस का साइन दिख रहा है।

उसी के साइड में छोटे-छोटे अशोक के पेड़ दिख रहें हैं जो की हरे-हरे दिख रहें हैं और उनके ऊपर एक तार लगा हुआ है उसी के साथ आसमान दिख रहा है जोकि नीला लग रहा है।

उसी के साथ यहां पे पेड़ दिख रहे है जो कि व्हाइट कलर के दिख रहे है बहुत बड़े-बड़े है बिल्डिंग के साइड मे एक लड़का खड़ा है जिसने जीन्स और एक ब्लैक शर्ट पहना हुआ है।